घर बहुत बड़ा बंगला है बंगला का कलर अ उजला है आदमी बाइक से जा रहें हैं जो बाइक पे दो आदमी सवार हैं एक का टी-शर्ट का कलर पूरा येलो है।

दीवाल है और उनके मूर्ति पे पूरा कुछ कुछ कछुआ बैठी हुई हैं जो एक सौ आठ कछुआ हैंपैर-हाँथ पे रखे हुए --